और मूर्ति काले कलर की दिखाई दे रही है दूर रखी हुई नटराज की। ये नटराज का मूर्ति है जोकि दिखाई दे रहा है।

एक लाल और काले कलर की मोटर बाइक है। एक काले कलर की मोटर बाइक है।

होटल के सामने कुर्सी और टेबल लगा हुआ है और एक मोटरबाइक लगी हुई है। एक होटल की तस्वीर है।